यहां पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

दीवाल में गेट भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी फल दिखाई दे रहे हैं जैसे अंगूर आम।

सामने कुछ बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक एंबुलेंस भी।

बगल में बहुत सारे कारें भी खड़ी हुई दिख रही है यहां से एक रास्ता भी गुजर रहा है।

आगे एक प्लास्टिक का कैरेट रखा गया है जिसमें आलू दिख रहे हैं।

दीवाल में बहुत बड़ा प्लस मार्क बना हुआ है।

जिसके ऊपर रांची लिखा हुआ है।

यहां बड़े अक्षर में बाल दाढ़ी लिखा हुआ है।

आगे एक छोटी सी मंदिर का भी स्थापना किया हुआ है।

यह एक लाइब्रेरी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक दिया भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने वाले दीवाल में बरस टांगा गया है।

यह एक गैरेज का दृश्य दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारे प्लास्टिक के बैग में फूल पौधे रखे गए हैं।

सामने पेंट की बाल्टिया भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे क्ला प्लास्टिक के क्रेट भी दिख रहे हैं।

यह रात्रि का समय व्यतीत हो रहा है।

सामने बिच्छू और मछली की आकृति बनी हुई है।